और एक बड़ा सा मैदान भी नजर आ रहा है और दूसरी लाल रंग की ही बिल्डिंग इसके सामने खड़ी है और बहुत से बच्चे घूम रहे है।

ये एक बुक स्टॉल है यहां पर बहुत सी बुके मिलती हैं बहुत से लोग यहां पर बुके खरीदने आते है और बहुत पसंद करते है उनकी मन पसंद बुक यहां मिलती है।

सड़क के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है वो मेट्रो स्टेशन या फिर रोड पार करने के लिए है इसमें बहुत से ई रिक्शा भी दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग को और रोड को दर्शाया गया है रोड पर काफी सारी गाड़ियां चल रही है कुछ गाड़ियां काले रंग की है और कुछ गाड़ियां पीली रखी है।

इस फोटो में काफी सारी घी की वैरायटी नजर आ रही है।

और कुछ टमाटर सॉस के भी नजर आ रहे हैं।

ये एक ग्रॉसरी स्टोअर जैसा नजर आ रहा हैं।